पेपर द्वारा कार्ड शीट द्वारा और रंग बिरंगी रिबन द्वारा अलग-अलग प्रकार के समान बना रहे है।

चाबी दी जा रही है इस बाइसिकल के पीछे एक घर बना हुआ है और उसके बाजू मे एक स्कूटी रखी हुई है।

इस बैंक मे रोज़ाना बहोत से लोग पैसे के लेन देन के लिए आते है।